सिनेमा के दिवानो के लिए बन चुका है कार्निवल सिनेमा । यहाँ पर आप हर किसी मूवी देख सकते हैं।

आप यहाँ के आसपास की भीड़ देख के ये जान ही चुके होगे कि यह चाऊमीन कितनी अच्छी और कितनी फेमस है ।

और शिव जी का आशीर्वाद लेते हैं और उनकी हर मनोकामना पूरी होती है।